चित्र में मुझे एक महिला ट्रेन पर डिस्पोजल लिए हुए खड़ी है।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

चित्र में सॉप का नाम अनमोल डेरी दिखाई दे रहा है।

पेड़ पर लाइट जलती दिख रही है।

चित्र में मुझे एक बेड पर लेटा हुआ आदमी का पैर दिख रहा है।

द सिटी कैफे दिख रहा है चित्र में मुझे एक आदमी खड़ा हुआ--

चित्र में मुझे बिल्डिंग पर लगी हुई ऐ_सी दिख रही है और चित्र में मुझे कुछ पेड़--

चित्र में मुझे गाड़ियों का स्टैंड दिख रहा है।

चित्र में मुझे एक बिल्डिंग दिख रही है।

मुझे एक चित्र दिखाई दे रहा है।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

मुझे एक चित्र दिखाईं दे रहा है।

चित्र में मुझे टेबल और कुर्सियां दिखाई दे रही है।

झरने से आता हुआ सफेद पानी दिख रहा है।

चित्र में मुझे एक बिल्डिंग्स दिख रही है।

चित्र में मुझे बिल्डिंग के नीचे खड़ी हुई कार दिख रही है।